वह भी बहुत मस्त लग रहे हैं और यहां पे ऊपर ये जो पत्तियां है ग्रीन कलर कि वह भी बहुत मस्त लग रही हैऔर निचे का जो पिंक कलर का सीन है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है और कोई वहां पर एक मूर्ति बना हुआ है जानवर का जो के बहुत--

दोस्तों ये एक पार्क का पिक्चर लग रहा है जो बहुत ओसम लग रहा है और यहां ऊपर से जो ब्लैक कलर का है वो भी बहुत मस्त लग रहा है और एक नीचे से एक ग्रीन कलर का है वो भी अच्छा लग रहा है देखने में और नीचे किसी और जो--

दोस्तों ये एक बस स्टैंड लग रहा है जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में यहां पर कुछ कुछ बसें भी हैं ।

दोस्तों ये एक ब्रिज लग रहा है जो की बहुत मस्त है ब्रिज का जो डिजाइन है वो भी मस्त लग रहा है सामने और की और से कुछ-कुछ गेट है जो कि बहुत मस्त लग रहा ब्लैक एंड वाइट लग रहा है और कुछ-कुछ पिंक भी है।

अगल अगल बगल में कुछ पेंटिंग बनी हुई है जो की बहुत अच्छी लग रही है | निचे की और से जो कारपेट बिछा हुआ हैवो भी बहुत अच्छा लग रहा है | वहां कुछ आदमी खड़े --

दोस्तों यह शादी का सीन है जो बहुत मस्त लग रही ह | सामने की और से जो व्हाइट कलर का सोफा है वह भी बहुत मस्त लगे हैं इसमें जो रेड कलर की लाइन बनी है वह भी मस्त लग रही है यहाँ के फुल जो है बहुत अच्छे लग रहे है उसके डिज़ाइन जो है कप --

दोस्तों यह एक स्विमिंग पूल टाइप का कुछ लग रहा है जो की बहुत मस्त लग रहा है यह स्लाइड करने वाला जो की बहुत मस्त लग रहा है एक ब्लैक व्हाइट का है एक ब्लू ग्रीन वाइट का है जो भी बहुत मस्त लग रहा है एक येलो ऑरेंज का है ।

और यह एक ऑरेंज येलो का है बहुत मस्त लग रहा है एक वाइट कलर का भी है जो की बहुत मस्त लग रहा है यहाँ कुछ कुछ आदमिया --

और यहाँ एक माउस और लैपटॉप रखा हुआ है और स्टेप-स्टेपलर भी रखा हुआ है एक पेन और एक कागज भी रखा हुआ है सामने एक और चीज़ येलो वाइट कलर की कैलेंडर जो की बहोत मस्त लग रहे है कुछ-कुछ वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं जो की बहोत अच्छा --

दोस्तों यह किराना का स्टोर लग रहा है जो की बहुत मस्त लग रहा है और सामने वो तीन बैग टंगे हैं जो की बहुत मस्त लग रहे है।

कल है वो भी मस्त लग रहा है | कलर है पत्थर के और कुछ सामने की और से कुछ आदमी और एक हाउस जो छोटा सा हाउस बना हुआ है जो की बहुत मस्त लग रहा है उसके आगे --।

यहाँ पे टमाटर भी बहुत है रेड कलर के है और हल्का हल्का कच्चे टाइप के है वो भी अच्छी लग रही है मिर्च भी है भिंडी भी है और ओनियन भी है और ये बहुत ही काफी अच्छी ताजी-ताजी सब्जियाँ हैं जो काफी कुल लग रही है।